वो नदी में कुछ मतलब महिलाएं नहा रही है कुछ लाल कपड़े पहनी है कुछ ब्लू कलर का है।

यहां पे कोई चीज का समारोह चल रहे हैं।

और आसमान में सतरंगी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक शविमिंग पूल जैसा नदी है।

और अनेक तरह का दुकान भी है।